नीचे सफेद पैंट पहन रखी है एक व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहन रखी है एक व्यक्ति ने नीले कलर की शर्ट टी-शर्ट और जींस पैंट पहन रखी है और ये खुद --

चूल्हे लगे हुए हैं और सामने कुछ व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं कुछ वाटर पार्क पे है तो कुछ --

एक ए_सी लगा हुआ है और यहां पर कुछ मशीने लगी हुई है और एक यहां पर मे टेबल लगी हुई है जिस पर --

बिछाई हुई है और यहां पर नीचे एक लाल कलर का डस्टबिन पड़ा है और यहां पर कुछ --

सी सीढ़ी रखी हुई है और एक यहां पर काले कलर की छोटी टेबल रखी हुई है और एक व्यक्ति यहां पर सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहन के खड़ा --

और एक यहां पर कांच का बक्शा कांच का बक्शा है जिसमें चॉकलेट रखी हुई है और यहां पर कुछ नमकीन के पैकेट है।

यहां पर एक होटल है और उसमें सफेद कलर की दीवारें हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने बैग टंगा रखा है और एक यहां पर ब्लैक कलर का पंखा रखा हुआ है।

और एक लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है इसके आगे जो और कुछ व्यक्ति खड़े हैं और एक महिला हैं जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है।

और इसके पार्क बाहर की ओर पहाड़िया बनी हुई है और उसपर पेड़ पौधे लगे हुए है।

और एक व्यक्ति अंदर काउंटर के अंदर की ओर कुर्सी पर बैठा है और एक बाहर की ओर खड़ा है और --

मकान बना हुआ है और जिसके लोहो का ब्लैक कलर का गेट है और इसमें अंदर जाने के लिए रैंप बना हुआ है।